एक बहुत बडा मेन गेट लगा हुआ है क्रीम कलर का है यहा चर्च है।

पीछे भी कुछ घर दिखाई दे रहे है राइट साइड पेड़ दिख रहे है आसमान ब्लू कलर मे दिख रहा है।

गमले मे फुल पौधे लगे हुए हैं। साइड मे भी घर हैं।

पीछे बहुत सा बड़ा जंगल भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे है।

उसपे भी छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है और पानी व्हाइट कलर मे दिखाई दे रहा है ब्लॅक अँड व्हाइट --

और बहुत ज्यादा मैदान है बीच बीच मे घर भी दिखाई दे रहे है बहुत ही सुंदर लग रहा है।

एक जंगल है यहा जगह जगहा पेड़ दिखाई दे रहे है यहा एक लड़का दिखाई दे रहा है।

यहा बहुत ही बड़ी चट्टान है यह चट्टान पर गाय जमी हुई है उन चट्टानों पर भी गाय जमी हुई है।

पानी है हलका सा पानी दिखाई दे राहा है साइड मे कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

बहुत बड़ा जंगल है यहा जंगल मे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे है पीछे का पूरा ह्न पूरे पेड़ ब्लॅक अँड व्हाइट दिख रहे है।

यह बहुत ही बड़ा जंगल है जिसमे घास उग रही है बहुत ही हरा हरा दिखाई दे रहा --